और पीछे इसके तीन ट्रक रखी हुई है कुछ रेड है कुछ ब्लू है।

उसके सामने एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

और एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है जो कच्चे में खड़ा हुआ है और पलियान में खड़ा हुआ है।

यहाँ पर आप देख रहे हैं एक घर है घर में बहुत सारे फूल पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पर आप देख रहे हैं घर में एक सोफा पड़ा हुआ है।

और ये आप देख रहे हैं शॉप जो है इन पर डिजाइनर डार्क कलर बनाया गया है।

यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हरा भरा मैदान नजर आ रहा है जिस पर आप खेलते हैं।

यहां पर आप देख रहे हैं एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने टी-शर्ट पहनी हुई और उसके पीछे एक लड़का और खड़ा हुआ है।

ये बहुत सारी लीले कलर के टफ से भी रखे हुए हैं।

और ये एक बोतल भी रखी है जिसमें पानी रखा हुआ है एक--

ये जो ब्लैक कलर की है और उसे पे एक व्हाइट कोट भी पड़ा हुआ है।

और डॉट इंस्टॉल भी पड़े हुए जिन पर कपड़े रखे हुए--

यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पंचायत शी हो रही है जिसमें बहुत शारे लोग बैठे हुए हैं बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं।

और आप पीछे देख रहे हैं वहां पर मोटर भी लगे हुए हैं।

यहां पर आप देख रहे है एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है जिसमें अं बहोत ही पत्थर पड़े हुए है कुछ बड़े है कुछ छोटे है।

और यहां पे इसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है और ये बहोत ही अती खूबसूरत मजारा है।

और इसमें नदी में आप अंदर देख रहे हैं एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक दुकान है जहाँ पर--

और टेबल जो है सारी कांच की है और एक स्टूल भी पड़ा हुआ है जो ब्लू कलर का है और एक चेयर भी पड़ी हुई है जो ब्लैक क--

इसमें कुछ ईंट दिखाई दे रही है ये पुराने जमाने की लगी हुई ईंट दिखाई दे रही है जैसे चीन की दीवार हो --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

और ये बंदिर के बाहर का नजारा है सभी व्यक्तियों ने--

और सामने आप देख रहे हैं दीवार पे कुछ तस्वीरें भी दिखाई दे रही है जो बहोत अच्छी लग रही--

दीवार पे ये पेंटिंग ऐसी बनाई गई है जो ऐसी लग रही है काफी अच्छी लग रही है।

और बाकी है रेड कलर की है इसमें ये पहिया वाली ट्रेन है।

और येलो कलर और ब्लू कलर का इसने लोवर पहना हुआ है जो काफी अच्छा लग रहा है।

यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक शादी है।

और ये बहुत डिजाइनिंगदार लगाया हुआ है काफी अच्छा नजारा है।

और यहाँ पर एक कुर्सी भी पड़ी है जिस पर दो बैग रखे हुए एक रेड कलर का है और एक ब्लैक कलर का है।

यूनिक कलर है और यहां पर आप देख रहे हैं डम्बल भी पड़े हुए हैं।

बैठने के लिए मैड़े भी पड़े हुए हैं।

और ये एक ब बैनर लगा हुआ हैजो वाइट कलर का है जिसमें ब्लैक कलर में भी लिखा हुआ है।

यहाँ आप देख रहे हैं एक दुकान है दुकान में लोग आके के बैठे हुए हैं।

और कुछ बोरिया भी दिखाई दे रही है बोरियों में आलू भी है और प्याज भी है।

और यहां पर क वाइट कलर की बलब भी लगे हुए हैं।

यहां पर आप देख रहे हैं एक कर नजर आ रहा हैजिस पर लिखा हुआ है।

चाणक्य कंपटीशन अकैडमी यहां कंपटीशन की तैयारी की जाती है। आप कोई सी भी कंपटीशन की यहां तैयारी कर सकते है।

और यहां पर आप देख रहे हैंयह बहुत ही अच्छा नजारा है वाइट कलर के वलप भी लगे हुए हैंऔर यह एक जिम है जिसमें एक बाल्टी भी रखी हुई हैकरे कलर की है।

और यहां पर हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और पंखे भी लगे हुए हैं और ए_सी भी लगे हुए हैं जो काफी अच्छा नजारा है ये रात का नजारा लग रहा है मुझे।

और हरी भरी यहां पर घास भी उभी हुई है कुछ मैदान आ रहा है कुछ जगह से शुखा हुआ है।

और एक हरे कलर की वोट वो क्या बोलते हैं उसको बाल्टी भी रखी हुई है जिसमें कुछ कागज पड़े हुए हैं।

और कुछ बच्चे खेलते हुए भी नजर आ रहे हैंऔर कुछ कपल भी नजर आ रहे हैं जो यहां पर मजे लेने के लिए आते हैं।

आप देख रहे हैं गाड़ी नजर आ रही है जो आल्टो है।

चीजों पर सामान रखा हुआ है जो उतारा जा रहा है।

ब्लू कलर की छतरी भी लगी हुई और एक बराबर में छयोटा हाथी भी दिखाई दे रहा है।

और स्टोल भी रखा हुआ हैजो काफी अच्छा लग रहा है।